अ-- केक के ऊपर तरह-तरह के अनेक प्रकार के चॉकलेट सजायें गए हैं।

पेड़ है पे और पहाड़ है।

-- और उसमे तरह तरह की कार गाड़ी है जैसे की लाल कलर ब्लू कलर की तत काले रंग की है।

इहा बड़ा का पंडाल है।

में काफी सारे महिला पुरुष बच्चे जो हैं पंडाल के स्वागत द्वार के पास खड़े हैं।

एक व्यक्ति ब्लू रंग का शर्ट और जीन्स पहन के कुछ बोलने का प्रयास कर रहा है।

बड़े - बड़े तार के पेंड़ है।

बड़े -बड़े पेड़-पौधे भी लगे है।

इसमें काफी सारे अलग-अलग--

खेती होती है यहाँ--